दुकान के अंदर एक कूलर भी है जिसमें कोल्ड ड्रिंक पड़ी है।

बड़े से ग्राउंड में एक मकान टाइप भी है।

मकान घास फूस से बना है।

नदी के ऊपर से एक लकड़ी का पुल जा रहा है।

मोटे मोटे पत्थर भी हैं तथा चारों ओर पर्वत हैं।

दुकान के ऊपर दो मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन मकान भी है।